मूर्ति में एक भगवान की प्रतिमा बनाई गई है जो पत्थर की बनी हुई है।

उनके अध रस्ते के आस-पास कुछ छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं मंदिर सफ़ेद का है।

इस तस्वीर मे हमें दो लडकिया दिखाई दे रही हैं से सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रही हैं एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।